वोट का दृश्य है बहुत सारे नाव है पीछे दो तीन चार चार-पाँच पेड़ है ताड़ कें पेड़ है एक स्वान जैसा नाव बना हुआ है और एक सामने ही पाइन का भी अ पेड़ है।